देख सकते है कि यहाँ पे हमें और नीचे काफी सारे रेत नज़र आ रही है बिखरी हुई मिटटी जैसी कुछ देखने को मिल रहा है पूरा ब्राउन कलर का है और सामने अ-कुछ पानी सा भरा हुआ है एक तरफ पे--

देख सकते है की यहा पे हमें एक गाड़ी खड़ी हुए नज़र आरही है जो पूरी वाइट कलर की है और उसपे अ-अ-अ जो बोनेट है वोह हमे अअअ येल्लो कलर --

हम देख पा रहे के हमें पहाड का एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा देखने को मिल रहा है जिसके नीचे पुरो एक गुफा जेसी कुछ बनी हुआ है उसमे नीचे कुछ अंदर लोग चलते हुआ दिखने को मिल रहे है और हम देख पा रहा है की ये ऊपर में भी हरे भरे कुछ पत्ते से नजर आ रहे है।

करे तो यहाँ पर हम देख सकते है यहाँ पे हमें निचे की तरफ कुछ वाइट कलर की इमारतें सी दुकान जेसे बनी हुआ नजर आ रही है जिसमे सटर लगे हुए है ग्रे कलर से कलर के और साइड हम देख पा रहे है कुछ रेत वगेरा सी राखी हुई है ।

बात कर तो यहा पे हम देख सकते है की काफी लम्बी सी ऊंची सी एक हमे इमारत नज़र आ रही है जिसमे बड़ी बड़ी घड़ी यहाँ से लगी हुआ है और उसके हमे कुछ विंडोज --

और जो कि तीन उसमे ल्येर्स बनि हुई है और सामने की तरफ हमे कुछ बाउड्री देखने को मिल रही है चारो तरफ से घिरी हुई और उसके सामने हमे एक ऑरेज कलर की अ बिल्डिग सी देखने को मिल रही है जिसमे एक बिच मे एक--

सत्तेकी यहाँ पे हमें वाइट कलर की बाउंड्री सी दिख ने को मिल रही है जोकि थड़ी सी गनदी सी भी हो रही है काली-काली सी जिसमे क अअ दाग धब्बे से लगे हुई है और हम देख पा रहे एक छोटा सा एक बहोत ही छोटा सा मंदिर बना के रखा हुआ हैं।

इस पिक्चर में हम देख सकते है यहाँ पे हमें पिंक कलर का एक छोटा सा मन्दिर जेसा कुछ देखने को मिल रहा है और वो पूरा पिंक कलर का उसपे पेंट किया गया है और उपर की तरफ सामने हमे एक गेट देखने को मिल रहा है गेट के अंदर भि हमे कुछ और मूर्तियां राखी हुई नजार आ रही है जो की थोडा अंधरे में है।

देख सकते है यहाँ पर सब से ऊपर एक बोर्ड सा लगा हुआ है जहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और कुछ फोटोस प्रिंटेड नज़र आ रही है वहा पे --